यहां काफी अच्छा सा मौसम नज़र आ रहा हैं। चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही हैं।

जिसमें कई व्यक्ति बैठे हैं।

और उस साइड पे एक स्ट्रेशन नज़र आरा है।

यहाँ हमें के.एफ.सी. का रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है।